इस तस्वीर में हमें अ हरी भरी घांस नजर आ रही हैं दोनों तरफ और बीच में--

वो अ एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

अह इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि--

ये उन्ही का फंक्शन या शादी समारौ या जो भी चल--

फोटो निकलवा रहे हैं बाकी लड़के लड़कियां खड़े हु हैं।

अ के दौरान ये जो चल रही है एक्सरसाइज वो नजारा है ये दृश्य है जिम का--

और सजा थोड़ा सजा भी हुआ कमरा है।

और प्राइस प्राइस एरर नाम से है ये--

और छोटे-छोटे ये पेड़ पौधों को जो एक महिला है उनके हाथ में एक पाइप हैपानी--

इस तस्वीर में अ हमें एक बड़ी सी गाड़ी जो जिसके गेट खुले हुए हैं।

इसमें अअ शादी समारोह हो या जो भी फंक्शन है।

उसका ये डेकोरेशन हैमेन अ जो मुख द्वार होता है।

और ये पूरी पत्थर की बनी हुई है बाहर की तरफ ज जो हैवो भी बैठने के लिए पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

ये मछली बाजार है जिसमें कई सारी मछलियां छोटी-बड़ी रंग बिरंगी मछलियां रखी हुई।

मछलियों के पास और एक और जो महिला है मोबाइल पर बातें कर रही है वो भी बैठी हुई है।

अ बस स्टैंड का नजारा हैये बस स्टैंड पर काफी बसें खड़ी हुई रहती हैंऔर यात्री--

अवहां पर सवार होने के लिए कुछ उतर रहे होते हैं कोई उसमें बैठने के लिए आता है।

अ काफी बड़ी अ बनी हुई है दूर-दूर तक--

बिल्डिंग हैऔर शॉप्स नजर आ रही हैं आती जाती गाड़ियां और चल फिर भी रहे हैं लोग--

और ये ज्वेलरी का भी लाल कलर का बोर्ड नजर आ रहा है दुकानें बंद हैंअभी कुछ खुली हैकुछ बंद हैं।

अह इस तस्वीर में अह बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर बॉस कार सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल --

और जिसके हॉस्पिटल के सामने नीचे बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं।

सामुदायिक अअ स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा हुआ हैबिल्डिंग पर--

और बिल्डिंग के बाहर एक एंबुलेंस खड़ी हुई है।

स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं बहुत सारी चेरी जिसे बोलते हैं वो हमें इस पिक्चर्स में नजर आ रही है।

अह्हइस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो छोटे-बड़े बच्चे हैं।

अ वॉश बेसिन बहुत सारे और टॉयलेट और--

कुछ कीले और हुक वगैरह और जो--

और पैकेट्स है सेल है बहोत सारी चीजे हैं।

कुछ पैकेट्स लटक रहे हैं यह जो गरम मसाले और जो भी हैं चाट मसाले ये सबहै।

पीछे की पूरी लाइन खाली है और बीच की लाइन में ये--

महिला बैठी हुई है एक आदमी भी बैठा हुआ है दूर और आगे भी कुछ महिलाएं बैठी हुई है।

अपनी अअ सेल्फी ले रहा हैया फि और--

और ठंडी खीर और काफी सामान भरा हुआ नजर आ रहा हैखाने-पीने का--

इस तस्वीर में अह दो बड़ी अह तीन है तीन दुकानें हैं जिनके शटर अह बंद हैं।

दुकानें बंद है और बाहर लाइट जल रही है।

ये सौंदर्य से भरपूर है ये दृश्य--

घर के बाहर का डेकोरेशन शादी समारोह या किसी भी और समारोह में हम देखते हैं फूलों से--

अअ किया हुआ ये पूरा एक द्वार हैजिसे--

अअ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कुछ चलते फिरते नजर आ रहे हैं और पार्किंग एरिया हैतो उसमें गाड़ी पार्क है।

और थोड़ी ये मैदान सा अ छोटा सा ये नजर आ रहा है बाहर पड़ा हुआ--

अअकुछ नीले रंग की कुछ पीले रंग की और ये नृत्य पेश कर रही है।